एक बैंक नज़र आ रहा है एक आदमी नज़र आ रहा है जिसने काले रंग का पजामा क्रीम कलर की टीशर्ट पहनी हैं।

दो गुलगस्ते दिखाई दे रहे हैं। दो लाल रंग के पोस्टर नजर आ रहे हैं। गोल्डन कलर की रेलिंग नजर आ रही है। फर्श दिखाई दे रहा है।

मुझे मछली की दुकानें नजर आ रही है जिसमें मुझे वाट भी नजर आ रहा है मछलियाँ नजर आ रही है मुझे नीले --

फलों की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें संतरे अनार सेब हरे रंग के केले दिखाई दे रहे हैं। मुझे अख़बार भी दिखाई दे रहा है।